बहुत बड़ा समुन्दर दिखाई दे रहा है इसमे दो नाव दिखाई दे रही है एक नाव पे बहुत सारे लोग सवार है एक नाव पे चंद लोग सवार है इस में बहुत सारे कौवे उड़ रहे चीले दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रहा है।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

बोहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं बड़ी-बड़ी एडवरटाईजमेंट की फ़ोटो भी लगाई हैं स्पौंसर भी दिखाई दे रहे हैं बोहोत ही खुबसूरत प्यारा सा माहोल --

आगे कुछ ट्रक स्टेशन दिखाई दे रही है इसके एक ट्रैक पे बहुत सारी तितीया बिछाई गई हैं ट्रेन भी दिखाई दे रहा है